और यहां आसपास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे साड़ा के पेट्रोल पंप है।

बहुत सारे बिजली के खंबे हैं।

यहां पे बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और यहां पे बहुत पानी--

यहां पे बहुत सारे साइकिल और बाइक्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे--

डम्बल्स से यहां पे लाइट्स और ए_सी फैन मिरर दिखाई दे रहा है।

और ये बॉलिंग गेम दिखाई दे रही है।

और यहां पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रहे हैं।

ये एक मेडिकल शॉप है मेडिकल शॉप के अंदर बहुत सारे शेल्फ --

बहुत सारे यहां पे दवाई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे सिरप के बॉटल्स है चेयर है कैश काउंटर है।

और यहां बड़ी सी सड़क है यहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ऑफिस रूम दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारे अलग-अलग ऑफिस के सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सड़क है सड़क पे बहुत सारी भीड़ है कमान है।

औरत दिखाई दे रही है उसके हाथ में पानी का पाइप है।

स्ट्रीटलाइट के खंबे दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा बगीचा दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत सारे लाइट्स है स्टेज है कर्टन है।

यहां एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये यहां पे स्कूल है और वाइट रंग का--

और ये चेयर को बहुत ही ज्यादा डिजाइन दिखाई दे रहे हैं बहुत बारीकी से।

बड़े-बड़े फर्श है रेत है मिट्टी है हरे घास है।

सांच पहने हैं और यहां पे रेड कलर का बड़ा सा कार्पेट दिखाई दे रहा है।

मंदिर में बहुत सारे लोग यहां पे पूजा कर रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़ा सा गेट बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे फुटवेयर शोरूम दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं।